जिसका नाम कृष्णा केमिस्ट है।

इसके अंदर बहुत सारे सोफे दिखाई दे रहे है।

महात्मा बुद्ध की मूर्ति का रंग गोल्डन कलर का --